उसके एक तरफ में सीढ़ी दिखाई दे रही है और एक तरफ में और भी कुछ दूसरे पेंट के दुकान दिखाई दे रहे हैं।

स्कूटी और बाइक की और साइकिलों की भीड़ है लोग ऊपर -नीचे अपने काम कराने के लिए जा रहे है।

ये एक पुल के नीचे का फोटो है जहाँ पोस्टर दीवार पर बना हुआ हैं स्वच्छ सर्वेक्षण --